और यहां पर लोगो है और यू आर अंडर सी_सी_टी_वी कैमरा कॅमेराज् भी है और बहोत सारे पहाड़ --

यहां पर हमें बहोत ही सुंदर सा टेबल दिख रहा है और आगे एस यू एस का लोगो है।

यहां पर स साड़ी में एक औरत है।

और यहां पर एक औरत है जो कॉल पे बात कर रही है।

ये भी आगे की तरफ़ चल रही है और आगे हमें बहोत सारे लोग मास्क लटकाकर दिख रहे है।

और बाहर ली साइड बाइक की पिक्चर है बाइक है।